काफी अच्छा अच्छा नजरा देखने को मिल रहा है वहां पर बहोत अच्छा सा व्यू है देख सकते है यहां पर इसमें भी बहोत प्यारा प्यार सा--

और स्वेगात्मक समस्या विद्यालय में समस्या सामाजिक समस्या पाठ्यक्रम क्रियाओं में--

और अपनी बॉडी भी दिखा रहा है रेड कलर का हुड पहिना हुआ है व्हाइट शूज है।

पेड़ है जो बहोत ही सुंदर है और इसमें चारों साइड बहोत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स लगे है और उसके साथ ही एक--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

बिल्कुल केयरफुली काम होना चाहिए और सभी ने कैप पहने हुए है।

फर्श है बहोत प्यारा सा शीशा लगाया हुआ है जिसमें एक एक पुष्का है जिसमें बहोत प्यारी प्यारी सी अ--

और काफी अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है काफी अच्छा व्यू है।

और एक ऊपर एक क्रिश्चियन का चिन्ह नजर आ रहा है प्लस का और ये जो चिन्ह होता है ये--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

सी है जोकि ब्लॉक ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी --

आपके आर्ट्स ब्लॉक जैसे सब कुछ होता है जैसे कि आप हॉस्टल है कॉलेज है वगैरा उसमें होता है ये --

बहुत इंजॉय ले रही है बहुत सारे--

साथ में बांधते मेरा बांधते थे काम करो--

तस्वीर में हम देख पा रहे हैं बहोत सारा सामान--